उस गार्डन में व्हाइट कलर का--

मंदिर में एक कालका माता की मूर्ति दिखाई दे रही है।

वहीं पर छोटी छोटी घास भी दिखाई दे रही है।

सामने एक केकड़ा मशीन दिखाई दे रही है।

ऊस जीम में बड़ी-बड़ी एक्सरसाइज की मसीन रखी हुई है।

उस बोर्ड पर मेमेंस चाय वाला लिखा हुआ है।

उस चाय की दुकान के सामने आदमी हैं।

टेडी की दुकान दिखाई दे रही है।

उसी मकान मे गणेश भगवान का बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

गेट के ऊपर सुखदेव पैलेस लिखा हुआ है।

गेट के अन्दर रेड कलर का कारपेट लगा हुआ है।

उस दुकान के बोर्ड पर अजंता फोटो लिखा है।

उस रूम में बहुत सारी टेबल और कुर्सियां रखी हुई हैं।

रूम के अंदर बड़ा सा सोफा रखा हुआ है।

उस मॉल में एक साड़ियों की दुकान दिखाई दे रही है।

रेड और वाइट कलर के बैलून से सजाया गया है।

बिल्डिंग के सामने बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे है।

सामने एक मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।